ब्लू रंग का बोर्ड है।

केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बड़ा सा बोर्ड है ग्रिल है व्हाइट कलर का बिल्डिंग है राजा विशाल के कथि है

चाय के होलसेलर सिसु टी दुकान के नेम ह और कलकत्ता बोर्ड प्रीमियम क़्वालिटी के चाय मीटर ह स्विच बोर्ड ह लागल शटर वाला दुकान ह।